इस फोटो में मुझे एक कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अंदर मुझे एक वेयरहाउस दिख रहा है जिसके अंदर बहोत सारे वर्क्स है।

मुझे इसमें विंडोस और गेटस नजर आ रहे हैं मुझे इसमें ये लड़कियाँ नजर आ रही हैं और जमीन नजर आ रही है।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

मुझे ये स्टूडेंट्स कुछ पेंटिंग और ड्राइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे दो टीचरें नजर आ रही हैं जो की लेडीज हैं खड़ी हुई हैं मुझे इसमें कुछ विंडोस नजर आ रही है कुछ इसमें रौशनी नजर आ रही है।

इस फोटो में मुझे सुबह का वक्त दिखाई दे रहा है इसमें मुझे एक ब्रिज दिखाई दे रहा है उस ब्रिज के ऊपर मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।